यह पेट्रोल का शायद पेट्रोल नहीं है एक सर्विस सेंटर है। ऑटो का बाइक का यहाँ सर्विस किया जाता है।

यह एक बंगाली या मद्रासी हॉस्पिटल है।